तीसरी बस का कलर पिंक और व्हाइट दिखाई दे रहा चौथी बस का कलर रेड और व्हाइट दिखाई दे रहा जहां यह रात का फोटो लग रहा है यहाँ पे लाइटिंग भी अच्छी दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे एक स्टोर दिखाई दे रहा है जोकि कपड़े का स्टोर दिखाई दे रहा है जहां पे सारे कपड़े दिखाई दे रहा है जहा पर मुझे जॉकी लेफ्ट साइड में लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे मेल आइटम या राईट साइड में मेल आइटम मिलते हुए दिखाई दे रहे है और लेफ्ट साइड में फिमेल आइटम मिलते हुए दिखाई दे रहे है| यह एक कपड़ो की दुकान का फोटो लग रहा है।

यहाँ पे मुझे बहुत सारे बिल्डिंग भी दिखाई दे रहे है यहाँ सीधे हाथ की तरफ एक व्हाइट बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

सा मुझे यह मंदिर पेड़ में दिखाई दे रहा हैं यह मंदिर बहोत ही अच्छा दिखाई दे रहा है छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है।